यहाँ पर एक महिला है जिसके आजू - बाजू कुछ सीढ़िया बनाई गई वहाँ पर कुछ लोग बैठे नज़र आ रहे है वहाँ बीच में एक आदमी खड़ा है।

यहाँ यहा पर एक रास्ता दिख रहा है जहा पर कुछ कचरा गिरा हुआ नज़र आ रहा है वहा कुछ लोग दिखाई दे रहे वहा पर बहुत सारी दुकाने लगी--

कुछ टोकरी रखी और वहा कुछ छतरियां दिख रही उन टोकरियों में बहुत सारे फल बेचने के लिए रखे वहा कुछ कैरट दिखाई दे रही पीछे कुछ पेड़ है।

यहां साईड में एक रास्ता दिख रहा हैं वहां एक दीवाल दिखाई दे रही हैं वहां पे पीछे कुछ पेड़ दिख रहे हैं वहां कुछ शेड दिखाई दे रहे हैं वहां खेलने के कुछ--